दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग खड़े भी हैं सामने एक--

बना हुआ है और पीछे मकान भी बने हुए हैं।

यहां पर एक रूम है जिसके पीछे--

लगा हुआ दिखाई दे रहा है और उस बोट के सामने भी एक आदमी--